यह एक गैरेज है। यहाँ सभी खराब गाड़ी को बनाया जाता है।

चिट्ठी को पीऊन अपने-अपने घर पहुंचा देते हैं।

यह केक की दुकान है यहाँ बर्थडे केक बिकते हैं।

ये शाखा जमुई मे है यहाँ के शाखा प्रबंधक बहुत अच्छे है।

यहाँ टेबुल लगी हुई है। आदमी सब खाना खा रहें हैं। यह बहुत अच्छा सजावट किया गया है।

पैंट शर्ट साड़ी सभी कपड़े उचित दाम में मिलते हैं।

यह टमाटर बहुत सारे आदमी खरीद रहें हैं।

यह मूर्ति यह मंदिर बहुत बड़ा है। मंदिर--

यहाँ ई.सी.जी. होता है। यहाँ लोग ई.सी.जी. कराने के लिए आते हैं।